ये एक पहाड़ वाला इलाका है यहाँ एक दो पेड़ है बस।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यहाँ पे फ्रिज ऐ_सी टी_वी हर एक चीज मौजूद है यहाँ पे एक बाइक एक स्कूटी और एक और बाइक है।

ये एक शॉप का दुकान है यहाँ पर एक आदमी ब्लू टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पेहेनकर उलटा खड़ा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा मैदान है। जिसमे बहुत सारी हरे हरे घास है और इसके यहाँ इस मैदान मे बड़े बड़े कार भी लगे हुए है। एक --